इसमें एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे बहोत सारे लोग खड़े हुए--

और यहां कई बिजली के खंभे भी दिख रहे --

ये तस्वीर एक बड़ी सड़क की है यहां पर मेट्रो का पुल भी दिख रहा--

यो तस्वीर एक समुंदर की से ।

यहां एक आदमी बैठा हुआ--

यहां पर एक बड़ा मैच रखा गया है।

करी गई है और यहां बहुत सारी लाइटें जल रही--

चौपीश की तरह इनको रखा गया है।